टूटी और शॉवर दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर काफी सारे डीब्बे रखे हुए हैं।

तिरंगा लगा है ऑरेंज वाइट और ग्रीन कलर का--

दो लड़के खड़े हुए हैं बाहर एक नीले रंग की बाल्टी और एक साइकल खड़ी है।

पटेल टेलर्स की दुकान है साथ में दिन का समय है।

इस फोटो में लाल और पीले रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

घास नजर आ रही है काफी सारे लोग बैठे हैं।

दो डब्बे पड़े है ब्राउन कलर के।

इस फोटो में एक बाइक है।

कैमरा भी लगा है सामने लिखा है हैप्पी बड्डे --

आस पास काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें ए_सी लगा दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बहुत सारे इंग्लिश टॉयलेट दिखाई दे रही है शावर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक चेयर रखी है जो सफेद रंग की हैं।

फर्श पर टाइल लगी है। ओ भी सफेद रंग की है। एक डोर मैट दिखाई दे रहा है।

एक लड़का बैठा दिख रहा है।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

चटने दिख रही है दीवार सफेद रंग की है।

और यहां पर नीचे मिट्टी नजर आ रही है।

इस फोटो में सामने लिखा है टैगोर ऑडिटोरियम --

इस फोटो में एक ट्रैक्टर है। पीछे काफी सारे पेड़-पौधे हैं।

अ सीढ़ियां दिख रही है कैमरा भी लगा हुआ दिखाई--

देखो पीले रंग के और लाल रंग की चुनरी से भी डेकोरेशन की गई है सो फर्श पर काले सॉरी लाल रंग का कार्पेट बिछा हुआ है।

काफी सारे पौधे और पेड़ लगे हैं।

और काफी सारे लड़के अगल बगल में दिखाई दे रहे हैं पानी है यहां पर काफी सारा--